टपरी के ऊपर कप्स रखे हुए हैं। इस चाय के बाजु में एक लड़का खड़ा हुआ है।

यह एक जंगल की बड़ी पर्यटन जगह है। इस जगह के --

के सामने एक बड़ा खम्भा जैसा लगा हुवा है। इस खम्भे के नीचे लोग आ जा रहे हैं।

यह एक बहोत ही बड़ा क्रीड़ांगन मैदान है। इस मैदान में --

इस बगीचे के अंदर लाइट अ लगी हुई है।